वो पीछे के साइड ब्लू कलर दिखाई दे रहा है दीवार पर।

जैसे वहाँ जूस उसकी बोतल रखी है। आइसक्रीम के बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं।

स्टार वाली है। हार्ट शेप वाली है। नीचे भी कुछ ब्लैक कलर के कप रखे हुए हैं।

कलरफूल लाइट जल रही है। जैसे लाल है। गुलाबी है। नीली है।

यहाँ पर बहोत सारी पब्लिक खड़ी हुई है।

मिट्टी निकाल रहे हैं और बहोत सारे पीछे की साइड पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और ये एक बहोत बड़ा स्टेडियम है।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

ऊपर से लाल हो रहे हैं। उनपे छोटे-छोटे से दाग दिखाई दे रहे हैं जो लाल हैं।

सेब फल रखे हैं केले हैं। एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है पीछे एक मकान बना हुआ है जिसमें खिड़की लगी हुई है।

एक्सर्साइज़ कर रहे हैं और सब नीचे के साइड पे झुके हुए हैं और उनके हाथ है जो आगे है और रूम में एसी लगी हुई है।

ये एक मंदिर है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और मंदिर --

कुछ लोग हैं जो यहाँ पे चेयर पर बैठे हुए हैं। लाइट जल रही है।